उम्म बस में कुछ लोग बेठे हुए हैं और एक आदमी बाहर खड़े हैं | लाल टी-शर्ट हाफ पैंट पहने हुए हैं | उपर आसमान दिख रहा है चारो तरफ़ हरायाली हैं | पेड़ पौधे दिख रहे हैं |

हरे भरे हैं हरयाली ही हरयाली हैं उपर आसमान दिख रहा हैं बादल छाया हुआ हैं बिजली का तार दिख रहा है बिजली का खंबा दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।